ये झरना है जो पहाड़ों से गुजर कर पानी गिरता है और झरना का रूप ले लेता है और यहाँ से नदियों का उदगम स्थल स्टार्ट होता है यहीं से नदियां निकलती हैं।

यहाँ लोग अपनी कार को पार्क करके अपना जो भी काम होता है वह करते हैं |